इस इमेज में यहां एक रैक पर है एक विशिष्ट ईनाम रखे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां एक देवाल --